दे रहे हैं चित्र में पेड़ दिख रहा है।

चित्र में मुझे बॉटल दिखाई दे रहा है।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा हैं चित्र में मुझे हॉल दिख रहा हैं।

चित्र में मुझे दो लोग चलते हुएं दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे यश _बी_आई ए_टी_एम दिखाई दे रहा--

चित्र में मुझे मार्केट दिख रही है।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

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा हैं।